इसमें एक गेट दिख रहा है। गेट रंग-बिरंगा है। घर अच्छा नहीं है।

यह एक भारतीय डाक रखा हुआ है जिसमे वो पोस्ट इंडिया केंद्रीय भारतीय डाक यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ जिस पर पेंट लाल हो रखा है उसपे लिखा है भारतीय डाक।